यह फोटो में मुझे एक बिल्डिंग बन बनते हुए दिखाई दे रही है जिसमे कंस्ट्रक्सन का कार्य चल रहा है और यहाँ पर बोहोत सारे कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं बाहर बम्बू से बने हुए कुछ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आदमी चढ़े हुए हें।

यहां पर मुझे एक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और सड़क पे कई जगहों पे कचरा दिखाई दे रहा है यहां पे एक येलो कलर का डिपार्टमेंट बना हुआ है।

यह फोटो में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा हैं। तालाब में बहुत सारा पानी भरा हुआ हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ टिन के टपरे बने हुए दिखाई दे रहा हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे पानी भर गया हैं।

यह फोटो मे मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे बहुत सारी घास उगी हुई है गार्डन के में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक वाले खंबे भी दिखाई दे रहे है और यहां पर पीछे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान बहुत खुला-खुला दिखाई दे रहा है।

और आसमान बहुत साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा है यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा शानदार और अच्छा लग रहा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर नेचर बढ़िया लग रहा है।

जोकि रेड कलर की है यहाँ पे एक क्लोम भी दिखाई दे रहे है जोकि व्हाइट और ग्रीन कलर के है यहाँ पर बहुत सारे पंखे लगे हुए है और यहाँ पे मुझे फर्श का कलर ब्राउन दिखाई रहा है और यहाँ पर पंखे भी लगे हुए है।

और यहाँ पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और आसमान भी बिल्कुल खुला है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का खम्भा लगा हुआ है।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

यह फोटो में मुझे एक समुंदर दिखाई दे रहा है। समुंदर में कुछ जगह मच्छी की दिखाई दे रही है।

उसके पीछे मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और यहां पर आसमान मुझे बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है ओ यह देखने मे बहुत ही शानदार लग रहा है यह मीनार के ऊपर चांद बना हुआ है।

मे बहुत सारी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी फोटो खिचाते हुए दिखाई दे रहा है जो की टोपी पहना हुआ है ब्लैक कलर की शर्ट पहना हुआ है और उस अंधेरा दिखाई दे रहा है।